देखा जा सकता है कि चारों तरफ हरियाली है और ऊपर साफ आसमान है।

यह तस्वीर एक बुक स्टोर की है।

जिसमें कि काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें कि देखा जा सकता है काफी सारी महिलाएं एक साथ योगा कर रही हैं।

आसपास पेंड और लोगों के रहने के मकान भी दिख रहे हैं।

ये काफी सुंदर नजर आ रहा है।

जिसमें कुछ मुसलमान लोग कलमा पढ़ रहे हैं।

और साथ में नीचे भी बैठे हैं।

जिसमे की कई सारे फूलों की माला नजर आ रही है।

साथ में नीचे फूल भी नजर आ रहे हैं।

और लोग खरीदारी करने आए हुए हैं।

साथ ही में एक तालाब नजर आ रहा है।

बट कोई भी लोग नहीं है।

यह तस्वीर एक जिम --

उसके पीछे जो आदमी है वो एक्सरसाइज कर रहा है।

साथ की इमारत हरे कलर की है जिसके साइड में एक झोपड़ी बनी हुई है।

और टेनिस कोर्ट में काफी बड़ी बड़ी लाइट्स भी लगी हुई है।

यह तस्वीर विधानसुधा की है जिसमें की काफी सारे लोग आए हैं एक लड़की ने तिरंगा फ़हेरा रखा है।

और कई लोग यहां पे फोटो ले रहे हैं।

और रात का समय है इसलिए लाइट कम दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में दिखाया गया है कि ये एक वाइन शॉप है जिसमें कुछ लोग आपको दिख रहे हैं।